और चारो तरफ से हरे-हरे पेड़-पौधे हैं।

और बहुत सारे आदमी है जैसे वो इंजीनियर सब जैसा ड्रेस पहन के रहते है|

लैपटॉप एल.सी.डी. एल.ई.डी. पानी का बोतल है रखा हुआ।

औउ कितना बड़ा सुंदर पहाड़ है समुन्द्र है इसमें शिप है जहाज पानी जहाज।